यह केक की फोटो है। यह केक चॉकलेट से बना हुआ है। इस केक में बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई हैं।

यहाँ पे एटीएम की फोटो है। यहाँ पे अ बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे एटीएम के बाहर की फोटो है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है।

यह पेट्रोल पम्प की फोटो है यहाँ पे लोग पेट्रोल भरवाने के लिये आते है यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पे गाड़िया खड़ी हुई है यहाँ पे --

यहां पे बोहत सारे ऑटो खड़े हुए हैं। यहाँ पे बोहत सारे लोग की फ़ोटो है। यहाँ पे बोहत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहां पे ऑटो खड़े हुए हैं। यहाँ से बोहत सारे पेड़ दिख रहे हैं।